इस इमेज में हमे एक गेराज दिखाई दे रही है गेराज में हमे एक सफ़ेद रंग की कार दिखाई दे रही है। जो ऊपर टंगी हुयी --

सामने उसके एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है कमरे में हमे ए_सी लगा हुआ दिख रहा है पीछे हमे नीले रंग का पर्दा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा--

इस इमेज मे हमे एक मेला दिखाई दे रहा है मेले मे हमे लाल और नीले रंग की गुब्बारे दिखाई दे रहे है।